तरफ का दृश्य है आसपास में जालियां लगी--

यहां के सेवंटीन लिखा हुआ है।

जहां बहोत सारे लोग बैठे हुए हैं।

सूर्यास्त या सूर्यउदय का समय हैं।

आकाशवाणी रीवा मध्य प्रदेश यहां लिखा हुआ है।

जहां आई चेकअप भी किये जाते है।

जिसमें पानी भी भरा हुआ है।

मिट्टी व गिट्टी भी पड़ी हुई है।

आस पास में हरियाली छायी हुईं है।

एक आदमी साइकल पर बैठा हुआ है।

वह डांस परफॉर्मेंस कर रही हैं।